इस पे से लाल कलर का कपड़ा डला हुआ है।

इस इमेज में हमे बच्चो की खेलने की जगो नजर आ रही है।

यहाँ पे तरह-तरह की मछली रखी हुई हैं छोटी मछलियाँ भी हैं बड़ी मछलियाँ भी हैं।

जहाँ पे जे.सी.बी. भी खड़ी हैं। जे.सी.बी. खुदाई कर रही हैं ।

इस इमेज में हमें एक नदी नजर आ रही है नदी में नाव है।

दो बोर्ड नजर आ रहे हैं एक लाल कलर का एक हरे कलर का है।

यह इमेंज एक सैलून की है जहाँ पे काँच लगा हुआ है।

यह इमेज एक समारोह की है।

ए.टी.एम. के अंदर कुछ व्यक्ति खड़े हुए है।

पीछे एक लाल कलर का एक छोटा बोर्ड लगा हुआ है जिसपे सेल लिखा हुआ है फिफ्टी परसेंट ऑफ़ लिखा हुआ है ।।